आ जिसमें अ लाल कलर की मेट और नीले कलर की मेट लगे हुए हैं।

यह एक खेत की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें छोटी-छोटी घास जैसी उगी --

दिखाई दे रही है। उसके आगे बी एक कोने में कुछ एक झोपड़ी जैसी दिखाई दे रही है। आगे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

अ चौधरी फिटनेस पॉइंट लिखा हुआ है और उसमें फोटो में दो बॉडी बिल्डर दिखाई दे रहे हैं और शटर लगा हुआ है नीले कलर के वो अ स्तंभ खड़े हुए हैं।